ये एक ट्रॅवेलर मिनी बस है जिसकी नंबर प्लेट येल्लो कलर की है और ब्लॅक कलर पे उसका नंबर डला हुआ है। ठीक बस --

ये मंदिर के अंदर का है जहा एक काली माता की मूर्ति लगी हुई है काली माता की मूर्ति तर काफी फुल के हार लगे हुए है।

एक दुकान के उपर एक लाल रंग का तिरपाल रखा हुआ है यहा काफी सारे लोग रोड के किनारे खड़े हुए है यहा से एक ऑटो भी जा रहा है।

ये एक व्हाइट कलर की अरटिगा कार है जिसका येल्लो कलर का नंबर है और नंबर प्लेट पर प-ब्लैक कलर से नंबर डला हुआ है जो की है एम_एच डॉट --

ये एक व्हाइट कलर की कार है जिसपर रेड कलर से टी का निशान लगा हुआ है इसकी नंबर प्लेट येल्लो कलर की है।

और यहाँ एक पोस्टर भी लगा हुआ है जिस पर एक लड़की कुछ अच्छे कपड़े पहने हुए बैठी है ठीक उसि के नीचे व्हाइट कलर से काफी कुछ लिखा हुआ भी है।

ये एक व्हाइट कलर की स्विफ्ट कार है जिसपर रेड कलर से --